टेबल कुर्सी और कपड़ों के थान ये वस्त्रों की तह रखी हैं।

ये स्थान एक कैफे लाइब्रेरी या से जुड़ा हो सकता है।

अंदर में कई स्कूटर प्रदर्शित किए गए हैं।

पास में सूखी टहनियां और पत्तियां का ढ़ेर दिखाई दे रहा है।

उसके जूते लाल और सफेद रंग का है जो उसके कपड़े से मेल खाता है।

इस देश को देखकर ज्ञात होता है कि यह चित्र एक खुले हुए परिसर जैसा दिखाई दे रहा है।

इस पथ पर इतने एक पथ भी दिखाई दे रहा है और पथ के किनारे पेड़ लगे हुए हैं।

इस दृश्य को देख के ज्ञात होता है कि एक आइसक्रीम का दुकान है।

आइसक्रीम की दुकान का द्वार बंद पड़ा हुआ है।

और दुकान के ऊपर हिस्से में एक बोर्ड है जिसमें इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है ब्रंच इटालियन ।

यहां नर्सरी अंदर और बहार फूलों एवं फलों के पौधों की थोक और खुदरा बिक्री करती है।

क्योंकि इसका भवन साधारण और पुराना दिखाई दे रहा है।

इसमें अधिकांश अपने सर पर दुपट्टा लिए हुए--

इससे प्रतीत होता है कि धार्मिक स्थल है।

कहीं घास भी उगे हुए हैं।

इस दृश्य को देखकर ज्ञात होता है ये तस्वीर एक विशाल छायादर वृक्ष के नीचे बड़े धार्मिक स्मारक स्थल की है।

जिसका नारा है एक स्वास्थ्य जीवन की ओर।

जिसमें कुछ कपड़े सुखते नजर आ रहे--

जो सम्भवतया कोई सरकारी कार्यालय पंचायत भवन या सैनसनिक संस्थान हो सकता है।

और इस दुकान में कोई ग्राहक तो दिखाई नहीं दे रहा है।

यहां शिक्षकगण छात्र को पढ़ा रहे हैं।

शिक्षक एक डिजिटल स्क्रीन पर नक्शा दिखा कर पढ़ा रहे हैं।

जहां पर ज्यादा जूट और कपड़े के बैग बने हुए नजर आए।